इसका फ्लोर कांबिनेशन भी है जिसमें ब्लैक और व्हाइट से किया गया ह --

इसका जो फ्लोर है वह ब्राउन कलर से बना गया है।

ये एक गॉर्डन है जिसमें हरे हरे घास निकले हुए हैं और इसमें पानी का लेयर भी है।

इसमे पेड़ भी दिख रहे है और इसमे गुब्बारा दिख रहा है और रिबन भी दिख रहा है और घर भी दिख रहा है और--

अमूल है कप केक भी है और ये टेबल वाइट कलर से बनाया गया है।

और छोटे छोटे घास के पौधे भी है और इसका फ्लोर जो है वो सीमेंट कलर का दिख रहा है।

नदी का चट्टान जो है वो बहोत बड़ा बड़ा दिख रहा है।

जो ब्लैक कलर से पेंट किया गया हुआ है।

इसके अगल बगल बोहत सारे खम्बे भी दिख रहे है।

इसका जो फ्लोर है। वो वाइट कलर के सीमेंट से बना गया है।

ये एक सड़क है जहां पे एक बस है इस पे बहोत सारे व्यक्ति चढ़े हुए हैं।

इसमें पंडाल भी किए गए हैं जो की पीले कलर से किए गए हैं।

इसके अंदर एक टेबल है जो रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में बना है।

बगल में एक पेड़ भी है।

यह एक घर है जो अह व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

और इसके बगल में एक चेयर भी है जो ग्रे कलर का है।

इसमें दो कुर्सियां भी दिख रही है जो बाहर अंदर की ओर है।